कुछ लेडीस है बिना पर्स की ही खड़ी है। टेंट के साइड में एक स्कूटी खड़ी हुई है स्कूटी के बाजू में एक लेडीज और एक जैंट्स खड़ा हुआ हैजो एक दूसरे से बात कर रहे है जैंट्स के हाथ मे गोल्ड कलर की घडी है।

पेड़पौधे लगे हुए चित्ता स्टैंड पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा के सामने बाउन्ड्री हुई है बाउन्ड्री मे कलर डिज़ाइन ने बनी हुई है पीछे लाल कलर की हरे कलर की बाउन्ड्री नजर आ रही है और चित्ता सो रहा है।

इस तस्वीर मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग मे एक स्लैक्स टंगा हुआ है स्लैक्स पर एक लेडीज की फोटो लगी हुई है।